जमीन पर कुछ मिट्टी भी नजर आ रही है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य दिखाई दे रहा है।

तथा कुछ व्यक्ति जमीन पर योगा कर रहे हैं।

तथा कुछ तकिया भी दिखाई दे रहे हैं।

तथा चेयर पर सफेद रंग के कपड़े रखे हुए हैं।

यह एक मैदान का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और मैदान पर एक आदमी भी चल रहा है।

तथा जमीन पर हरा रंग का कपड़ा बिछा हुआ है।

एवं डब्बा भी दिखाई दे रहा है।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

कुछ लोग कुर्सियों में बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

ये हाथ में चाय लिए दिखाई दे रहा है।

और जमीन पर हरे घास दिखाई दे रहे हैं।

आइसक्रीम एक कटोरे पर है।

और एक पोस्टर भी नजर आ रहा।

और एक डेस्क भी नजर आ रहा है।

यह एक फैक्ट्री का दृश्य दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ भी लगे नजर आ रहे हैं।

एक घास का हाथी बना नजर आ रहा है।

और कुर्सियां भी लगी नजर आ रही है।

और जमीन पर पत्थर भी है।